यह हवाई जहाज है जो रनवे पर उड़ने की तैयारी कर रहा है और रनवे पर दोड़ रहा है उड़ने के लिए।

जिसमें गेंदा के अनेक रंग के फूल लगे हुए हैं बहोत ही सुन्दर द्रश्य।

यह मेरे खयाल से झींगा हेजिन्हे देखना भी हमे घिन्न सी आरही हेइसके बारे मे क्या टिपपड़ी करू मे अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे एस कुछ कहते हुए।